इस तस्वीर मे एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो शीशे के सामने अपनी तस्वीर खींचता हुआ नजर आ रहा है और उसके मुह पर सफेद रंग का लेप लगा हुआ है।

इस तस्वीर मे एक दुकान नजर आ रही है जिसमे बहुत सी लाइटे जल रही है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा पहिया नजर आ रहा है बहुत सी लाइटे जलती हुई नजर आ रही है और व्यायाम करने के यंत्र नजर आ रहे हैं।

और एक पुल नजर आ रहा है। लोहेका बना --

इस तस्वीर मे बहुत से बड़े पत्ते वाले --

इस तस्वीर में फूल नजर आ रहे हैं नकली--

फूल नजर आ र हैं और एक छोटा सा पंखा नजर आ रहा है रखा हुआ--